यह स्कूल है और यह स्कूल बहोत ही प्रचलित है और यह स्कूल समस्तीपुर करपुरी ग्राम मे पड़ता है और इसी मे हमारा भाई का एग्जाम हुआ था।

दो लोग है जो पानी के अंदर घुसकर नहा रहे ये जो तीन लोग है ऊपर में चोपिंग देख रहे है और एक बच्चा भी है वहाँ पर और एक कुर्सी भी |

और इस बैंक का शाखा जो है समस्तीपुर में पड़ता है।